इस फोटो में एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर कुछ एल.इ.डी. लाइट्स लगाई गई है बहुत सारी कुर्सियाँ यहाँ पर रखी गई हैं कुछ लोग खड़े हैं पंख लगे हैं और नीचे फ़र्श दिखाई दे रहा है।